इस दृश्य में मैं देख पा रही हूँ ये एक नदी है और नदी में देखिये कुछ दूर पर कुछ नाओ दिखाई पड़ रही हैं नदी --

इस दृश्य में मैं देख पा रही हूँ यह एक पार्क है। यहाँ पर देखिये फन पार्क लिखा हुआ है और अंदर बड़े-बड़े से वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं झूले लगे हुए हैं।

सी काई जैसी लगी हुई है यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है जो की फोटो खींचता दिखाई पड़ रहा है।

इस दृस्य हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक मैदान दिख रहा है जिसमे की एक ऊँचा सा झूला लगा हुआ है और यहाँ पर लाल रंग --

और यहाँ पर हरे भरे से पेड़ दिख रहे है नीचे कुछ पत्थर पड़े हुए है पानी लहरता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

इस दृस्य में हम देख पा रहे हैं यह एक बहौत बड़ी सी दूकान है जिस पर मनोहर लाल भगत राम का बोर्ड लगा हुआ है।

पैकेट और बहुत सारे डब्बे रक्खे हुए है दुकान के बाहर वेलकम लिखा हुआ है।

मीनारे दिख रही है मीनार में म लाउड स्पीकर लगा हुआ है मस्जिद के अंदर जाने के लिए द्वार बना हुआ है जिसमे की दोनों तरफ मीनारे बनी हुई है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ एक इमरत बनी हुई है जिसमे की देखिये नीचे भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ है चैनल आधा खुला हुआ है और बराबर में भारतीय स्टेट बैंक का --

दृश्य में हम देख पा रहे है ये एक शादी का दृश्य है यहाँ पर देखिये बहत सारी सजावट हुई है।

यहाँ पर एक आदमी और एक औरत खड़ी हुई है ज़मींन पर एक लाइट रखी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे आदमी और औरते है यहाँ पर देखिये किनारे की तरफ कुछ औरतें आदमी मोमबत्तियां जलाते हुए दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यह एक सर्विस सेंटर है यहाँ पर देखिये मारुती सुजुकी भगवती सर्विस सेण्टर का बैनर लगा हुआ है।

ज़मीन पर कही पर कुछ भट्ठी और कही पर कुछ छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यह एक स्टूडियो के अंदर का दृश्य है जिसपे की देखिए ऊम्प स्टूडियो लिखा हुआ है यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है।